यहां पे कोई मैच हो रहा है ये बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं इस मैच को।

ऐवलेबल है और यहां पे खाने-पीने का भी समान दिखाई दे रहा है फ्रिज है।